एक साइकिल खड़ी है और एक दुपहिया गाड़ी भी खड़ी है और घर के सामने भी एक दुपहिया गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में दो बकरिया चरती हुई नजर आ रही है निचे हरे-हरे घास दिखाई दे रहे है और --

यह किसी स्कूल के क्लासरूम की फोटो है बोर्ड पर ट्वेल्व्थ कॉमर्स लिखा हुआ है और बोर्ड को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है।

यह फ़ोटो एक सड़क की फ़ोटो है सड़क के किनारे दो बाइक खड़ी हुई दिख रही हैं और इसके पीछे एक छोटा सा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।